और यहां आने वाले समय में बहोत आगे जाएगा।

पहाड़ है जो बहोत ही प्यारा लग रहा है।

मुझे लगता है कि यह बहुत ही पुराना--

सभी प्रकार के आइसक्रीम दूध मलाई से बनाए हुए प्रोडक्ट मिलते हैं।

जो व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता है उन्हे यह पहनना चाहि--

यहां पर जिस प्रकार से लड़के वॉलीबॉल खेल रहे है यह दृश्य बहुत अच्छा है और बहुत सु--

बहुत ही ऊंचा झरना हैं जहां से पानी गिर रहा है।

और पानी गिरते हुए बहुत ही सुंदर सफेद दूध की धारा जैसा दिखाई दे रहा है।

और यहां पर सभी स्टेट के नाम लिखे हुए हैं।

मुझे लगता हैं कि यह शादी के लिए ले जाया गया है।

यहां हमारे समाज और दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता हैं।

यहां पर एक साइकिल रिक्शा है जो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है।

और मुझे लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में हर घर में होनी चाहिए।

लाइट का जगह है जहां से पूरे शहर को लाइट सप्लाई करी जाती है।

यहां से निकलने वाले हर व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजारा दिखाई देता है।